और नीचे रेड कलर का कारपेट और येल्लो कलर उसमे कुछ करागरी की गयी है। उसके पास में नीचे जो चेयर रखी गयी है वो वाइट कलर की बहोत सूंदर दिखाई दे रही है।

दो खम्बे लगे हुए है जो की येलो कलर के दिखाई दे रहे है उसके पास तीन चार थेलिया रखी है जो की येलो और वाइट कलर की--

इस तस्वीर में बोहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है और जिसमें एक बीच में एक खम्बा रखा हुआ है जिससे लाइटिंग होकर जिससे तार होकर गुज --

अभी ब्लू कलर का टॉप पहना हुआ है और उनके पास ही में जो है उन्होंने आ --

यह तस्वीर किसी घर की दिखाई दे रही है। जो घर है वो रेड कलर में बना हुआ है और इसमें व्हाइट कलर में भी पेंट --

किया गया हुआ है। इसमें जो गेट लगा हुआ है वो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे ब्लैक अक्षर में कुछ लिखा हुआ है।